और ये भी मंदिर है काफी अच्छा मंदिर है। यहाँ पर लायन भी बना हुआ है और हरे-भरे पेड़-पौधे भी पीपल भी लगा हुआ है। बीच में झंडा भी लगा हुआ है। काफी अच्छा स्थान दिखाई दे रहा है ये।

और मशीनें भी रखी हुई हैं कपड़े बनाने वाली अच्छी इत्यादि जैसे।

मोर और काफी अच्छे है बीच में मूर्ति भी है।

ये काफी अच्छा कॉलेज है या तो फिर स्कूल है और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है स्कूल में यहाँ पर लड़के लड़की दिखाई दे रही है कुछ सजाया जा रहा है कुछ बनाया जा रहा है।

और ये भी मंदिर अच्छा है काफी यहाँ पर जंजीरे बंधी हुई है।